एक ग्रीन है येलो है वाइट है पिंक है और ये बोहोत सारे चार खानों का पिंक कलर का बनाया है। ये पता नहीं जैसा क्या बनाया है। ये ब्लैक कलर --